यहाँ पे एक झोंपड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है और यह जो झोंपड़ी है लकड़ी की बनी हुई दिखाई दे रही है लकड़ी में सफ़ेद कलर का पैंट किया गया है और ये दरवाज़ा भी--

यहां पर हमें कुछ औरतें बैठे हुए दिखाई दे रही है जो कि आपस में बातचीत कर रही है और बगल में कुछ ही व्यक्ति बैठा हुआ एक औरत बैठी हुई है आपस में बातचीत कर रहे हैं कुर्सीयाँ भी बहुत ज्यादा डाली हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे जीपे रखे हुए दिखाई दे रही हैं ये एक काले कलर की जीप रखी हुई है और एक लाल कलर की जीप रखी हुई है और जीप की लाइट भी जल रही जलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहाँ --